काफी सारे प्लेयर्स खड़े हैं।

औरत छोटे बच्चों को उठाकर पैदल लेकर आ रही--

ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है इसमें सामने कुछ एल्सीडिस लगी हुई हैं।

इसमें कुछ आदमी भी खड़े हैं।

यह कुछ बुक्स इंजीनिरिंयग इ_सी_ई --

ए_सी स्लीपर कोच वाली है।

इसके सामने से एक आदमी बैग लेकर--

यहं काफी सारे चेयर्स लगे हुएं हैं।

ये गाड़ियों की नंबर प्लेट भी लगी हुई है।

इनके पीछे काफी सारा स्टाफ भी खड़ा है।

सामने एक ब्लैक व्हाइट कलर का तोफा पड़ा है।

यह सड़क की तस्वीर है।

इस पेट्रोल पंप का कलर ब्लू है।